इ के मायने एक जाली लग राखी है।

एक मायने एक फोटो दिखाय दे रही है फोटो अत्यत ही सुहाजंक है और अठे मकान बन राखो है।

मकान का बहुत सारा खभा है और एक छोटू सो दिख रहियो है और पड़े दिखाय दे रहियो है।